कुछ दुकान बंद है। एक दुकान खुली हुई दिखाई दे रही है। बाहर बहुत साड़ी मोटरसाइकिले खड़ी दिखाई दे रही है।

कुछ लोग मोमबत्तियां जलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद रंग की दो लाइटें दिखाई दे रही है।

इस दॄश्य में एक स्टेज बना हुआ दिखी दे रहा है स्टेज पर हरे रंग का मैंट बिछा है कुछ लड़कियां स्टेज पर बैठ --

यह दॄश्य कपडो के दुकान की है इसमें बहुत सारे बच्चों के लिए व औरतों के लिए कपडे दिखाई दे रहे हैं। कु --